पीछे में एक बिल्डिंग दिख रही है और वहां बिल्डिंग का काम अभी चालू ही है।

इस चित्र में हमे एक वर्तस्थानक का चित्र दिखाई दे रहा है।